कुछ आदमी पेड़ के यहाँ बैठे हुए है जो दिखाई दे रहे है जो हरी घास लगी है ग्राउंड मे --

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिख रही है बहुत बड़ी जिसमें गेट लगे हुए हैं और एक रास्ता सड़क दिख रही है एक पेड़ दिख रहा है और कुछ खम्बे दिख रहे है।

यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।